गाड़ियां हैं कारा हैं ऑटो वाले टू व्हीलर वाले लोग बैल मंडिया--

अलग अलग के झाड़ा रहे है बहुत सारे।

आजू बाजू बड़े बड़े यहां पेड़ भी दिख रहे हैं बहोत सारे यहां पे--

ये एक दुकान है यहां पे बहुत सारे शेल्फ रखे गए--

यहां बाजू में बहुत सारी एशियां लगे हुए हैं कुल्लर है।

और यहां पर मीठा तेल ऑयल भी यहां पे बहुत सारा रखे हुए है डब्बों में --

बहोत सारे कैमरे एल_ई_डी बल्ब से यहां पर बहुत सारे--

आइना है बहुत सारा यहां पे सामान है तोलने की यहां पे --

बाउंड्री खींची है पथरिया पक्षियों पाइपा प्लास्टिक पढ़ी हुई--

ऊपर फूलों के फराडे डाले गए लाइटा हैं बहोत सारे यहां पे बहोत सारी--

ये एक बड़ा सा मैदान है और यहां पे मैपिंग की जा रही है घर को बनाने के लिए।